एक दरवाजा है चॉकलेटी कलर का ए.सी. है आ.रो. है।

रोड के बीच में वाइट कलर की रखा है साइड में एक घर दिख रहा है।

ये एक स्कूल दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक ब्लैक कलर का गेट है ।

एक ऑटो दिखाई दे रही हैं इसमें --

दो अंकल खड़े हैं एक आंटी ऊपर खड़ी है साइड में एक होर्डिंग लगा हुआ है ।

ये एक दुकान दिखाई दे रही है इसकी टेबल पे एक छोटा सा काउंटर बना है साइड में दो --

उस में भी बहुत सारी फिश रखी है एक तराजू रखा है।

ऑरेंज कलर का जैकेट पहन रखा है लड़की ने ब्लू कलर का जैकेट पहना है साइड में बहुत सारा पानी दिख रहा है।

नीचे बहुत सारी बाइक खड़ी है साइड में रेलिंग लगी हुई है।

ऊपर सफेद आसमान दिख रहा है।

एक पिलर दिख रहा है उसेपे बहुत सारे लाइट के वायर लगे हुए हैं।

ये स्कूल है यहां पे बहोत सारे बच्चे दिख रहे हैं।

डमरू रखे दिखाई दे रहे हैं एक अंकल खड़े हैं ऊपर बहोत सारी लाइट जल रही है।

साइड में बहोत सारे बड़े-बड़े --

ये एक बुक सेंटर दिख रहा है जिसमें बहोत सारी बुक रखी हुइ है ऊपर एक --

पिलर का कलर आधा ब्लू और आधा व्हाइट है ।

ऊपर एक बल्प जल रहा है साइड में गोल्डन कलर का --

यहां बहुत सारे बच्चे खड़े हैं सबने --

बाहर तीन बाइक खड़ी है साइड में एक अंकल बैठे हैं कुर्सी पे दो जेंट्स बाहर खड़े हैं।

ये एक फुल डेकोरेटर की दुकान दिख रहे है जिसमें बहुत सारी मालाए रखी दिख रही है।